फूल है एक बच्चा पानी दे रहा है पेड़ो को। पाइप है घर है।

गाड़ी है पहाड़ है पेड है पौधे है घर है।

पेंसिल है रबर है शार्पनर है पेन है बक्से है फेविकोल है।

मैदान है घासे है पत्ते है।

और सफ़ेद रंग की पंखा है।

बड़ीसी इमारत है ऊपर टंकी है छत है पौधे है खिड़की है दरवाजे है नीचे दुकान है झोले टंगे है जीने है पेड़ है।

बड़े बड़े बहुत घने घने पेड़ है बड़े बड़े पत्थर है छोटे छोटे पत्थर है। छोटे छोटे पौधे उनपे पत्थरे है घास है। --

मिट्टी है दो टंकी है गाड़ी है बहुत सारी बडासा गेट है उसमे से एक आदमी जा रहा है गाड़ी से।

बडासा बाग है बगीचा है ऊपर मार्बल का बगीचा बना है उसमे घास है नीचे पुरे मे मिट्टी है मैदान है।

जन सेवा केंद्र लिखा है बच्चा है कंप्यूटर है लाइटे है।